वह काफी ऊपर खड़ा है तभी नीचे सब सामा जो भी हैं सब छोटे-छोटे दिख रहे हैं।

हर तरफ पेड़-पौधे हैं। इसमें मैदान में बच्चे भी बहोत सारे खड़े हैं जो कि खेल खेलने आये हैं।

ये जो तस्वीर है इसमें एक बड़ा-सा टावर है। जिस टावर का रंग सफ़ेद है नीचे में और इसके ऊपर में लाल और सफ़ेद रंग है।